आप देख सकते हो यहां पर बहोत सारा मोटरसाइकिल और टेंपो लगा हुआ है। यहां पर एक्सिस बैंक का भी ए_टी_एम है।

बहोत सारे कपड़ा हैं आप देख सकते हो नीचे टाइल्स लगा हुआ है यहां एक कपड़े से--

हेल्लो गाइज ब्रू कोल्ड टेल कॉफी यहाँ पर सब लोग कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं।

हैलो गाइस आप देख सकते हो ये पेट्रोल पंप है एच_पी का आप देख सकते हो यहां पे बहोत बड़ा पोल है बाइक है।

बढ़ाता है आप देख सकते हो गाइज बहोत अच्छा जगह है।

बहुत बड़ा यहां पे पोल खड़ा है गुरुद्वारा के ऊपर कोई लाइट जल रहा है।

हेलो गाइस आप देख सकते हो यहां पे फील्ड यहां पे कबड्डी भी --

हम दे सकते हैं यहां पर बहोत बड़े बड़े पेड़ हैं।

सुजुकी का है जिसका नंबर है सिक्स एट फाइव ।

हम देख सकते हम गाइज यहां गाड़ी भी जा रहा है पार्किंग के लिए--

देखो यहां पे व्हाइट कलर के गमले भी हैं देखो--